बर्फ़ी रखल बा दिया रखल बा औरी कुल बढ़िया लाग --

एगो आदमी मंदिर ह अरु मुँह से धोअम एगो का ह समझ मंदिर ह।

सरकारी कल बिया एगो नदी बिया एगो पेड़ बा आदमी के ठिकाने नौईखे मंदिर के यहाँ सुन-सान बा।